ऐसा ही कुछ लिखा गया की मै पढ़ नहीं पढ़ पा रहा हूं शायद वैज्ञानिक या आर्ट वाले से --

सारदा स्टोर हुआ है | ये पता नहीं ये कहा का है लेकिन इसमे जो उम् किसी ब्रांड का प्रचार सोनू सूद कर रहे हैं | ऐसा ही लग रहा है सोनू सूद इस के ब्रांड अम्बेस्डर हैं |

कैस्ट्रॉल ही कैस्ट्रॉल हाई गियर ऑटो मोबाइल .

यहाँ पे शायद सजाया गया और हो सकता है ये बड़ा दिन का हो या पच्चीस जनवरी सॉरी पच्चीस दिसंबर की आस-पास की ये फोटोज हो।

यहां पे अच्छे डॉक्टर्स हैं | यहाँ पे हर सभी चीजों का इलाज किये जाते हैं ।

इ देखने से बहुत ही प्यारा लग रहा है | हो सकता है ये किसी रेलवे स्टेशन का भी फोटो हो सकता है |

आप लोग इंतजार कर रहे हैबस स्टैंड में अच्छा वेल फर्नीशड रूम है |